एक बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है। ये व्हाइट कलर की है। उसके सामने जो ग्राउंड है यहाँं बच्चे खेलते हैं। सामने दो गाड़ियें भी खड़ी हैं।

और इसमें काम शीशे का हुआ है और यहां पर इसमें एक टेबिल भी रखा है और बहुत ही अच्छी है।

और जैसे कि ये बोहोत ही खूबसूरत लग रहा है। इसका जवाब भी नहीं है। इसके बारे में तारीफ जितनी करी --

ये एक जंगल है। इस जंगल में बोहोत सारे पेड़ खड़े हैं और इस पेड़ों में बड़ी ऊंचाई लग रही हैं।

इधर कपड़े भी बिक रहे हैं। सामने बोहोत ही अच्छा-अच्छा सामान बिक रहा है। इसकी जो कलाकारी है --

ये एक बोहोत ही अच्छा अस्पताल है और ये अस्पताल का फोटो जो लिया गया है --

और इनके फरावर में घास हरे कलर की हो रही है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। ये व्हाइट कलर की बिल्डिंग है जो बहुत ही प्यारी है।